यहां सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है।

यहां कुछ कुर्सियां और टेबल भी दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे कुछ पुरुष और महिलाएं काम करती हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे ये ए_सी लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे बहोत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रही है।

यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यह एक वाटर पार्क का दृस्य दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा है।

सामने पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

पहाड़ का दृश्य दिखाई दे रहा हैं।

यह रात्रि का समय व्यतीत हो रहा है।

यहां पे पहाड़ भी दिखाई दे रही है।

यहां पे झूला लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां बड़ी चट्टानें भी दिखाई दे रही है।

यहां पे कुछ पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां शीशे का गेट भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे चादर भी दिखाई दे रही है।

यहां पे बैठने के लिए सोफा लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां नीचे टाइल्स लगी हुई भी दिखाई दे रही है।

यहां पे पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जो सांस्कृतिक भेष भूषा में दिखाई दे रही है।

यह एक जलाशय का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यह रात्रि का समय व्यतीत हो रहा है।

यहां पे शीशे की दीवाल भी दिखाई दे रही है।

यहां पे एक लोहे का गेट भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे गमले में पौधे लगे हुए दिखाई दे रही है।

यह एक कार्यक्रम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ प्लास्टिक के बोडे भी दिखाई दे रहे हैं।

पर्दे लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां कुछ लड़ी से सजावट की गई है।

यहां पे कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत ही अच्छी रोशनी आ रही है।

यह एक फॉर्म का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ पानी की बाल्टिया भी दिखाई दे रही है।

यहां पर ईसा मसीह का मूर्ति लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।